ऊपर की तरफ हमें आसमान दिख रहे है छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी हमें इस फोटो में देखने को मिल रहे है जो भी बहुत सुन्दर लग रहे है।

लोग म्यूजिक देख रहे है साइड में हमे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है ऊपर हमे उ काला आसमान दिखाई दे रहा है।

यह फोटो हमे किसी मंदिर की लग रही है जो की बहुत ही अच्छे लाइटे लगा रखी है मंदिर के अंदर।

यहाँ पर सभी स्टूडेंट टेबलो पर बैठे हुए है।

और पीछे की तरफ हमें बहुत सारे जंगले दिखाई दे रहे है बच्चे टेबलो पर बैठे हुए है टीचर खड़ी हुई है।

यह फोटो हमे किसी बहार की एरिया की दिख रही है यह कोई कैफ़े का एरिया लग रहा है।

यह फोटो किसी बाहर के एरिया की लग रही है इसमें हमे बहुत सारी औरते दिखाई दे रही है।

यह फोटो बाहर के एरिया में ली हुई लग रही है यहाँ पर कुछ औरते नीचे बैठी हुई है आगे की तरफ लोग भी बैठे हुए है।

पीछे की तरफ हमे एक ट्रेक्टर भी दिखाई दे रहा है लोग काम कर रहे हैं और यह देखने में किसी बनाने वाले भी लग रे --

यहाँ पर लोग डांस कर रहे है इस फोटो में देख सकते है की यह फोटो किसी डिस्को की है जिसमे बहुत सारी लाइटे लगी हुई है और ये देखने में बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रही है।

यह फोटो किसी बाहर के एरिया से ली हुई है इस फोटो में हम देख सकते है बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए है।